जहां पर दो श्वान कि यहां पर मूर्ति नजर आ रही है और उसके पीछे के साइड --

और काफी सारी चीजें कांच के बक्से बक्से में रख कर गए हैं।